सामने एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहा पे बहुत सारे डेस्क लाइन पर रखी हुई है बहुत से लड़के लाइन के बाहर से बैठे हुये दिखाई दे रहे है जो की चार्ट मे कुछ --

सामने बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है। जिसपे हरी हरी धुरमा लगी हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे बचे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे है। उपर का आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

सामने एक शादी होती हुए दिखाई दे रही है। जहा पे एक दुल्हन एक दुल्हा बैठा हुआ है।

और नीचे फर्श दिखाई दे रहा है। और य लड़किया सभी मास्क लगाए हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक हाल सा दिखाई दे रहा है जिस पे स्वीट इट फिट केयरिंग लिखा हुआ है जहां पे एक लड़की व्यायाम करवा रही है।

सामने एक हॉल दिखा दे रहा है। जहा पर बहुत सारी लड़किया खड़ी हुई है। जो सभी एक टांग पे खड़ी हुई दिखाई दे रहे है। और उपर हाथ जोड़े है।

नीचे एक टांग पे उपर हाथ जोड़े है। सामने की दीवार सफ़ेद कलर के दिखाई दे रही है। दो लडकीय एक दरी पे खड़ी हुई है। इसका कलर पिंक कलर का है।

टेंट लगा हुआ है। एक आदमी बेठा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लड़के इसको सजाते हुए नज़र आ रहे है। सीढ़िया बनी हुई दिखाई दे रही है।

अ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है। एक मंडली दिखाई दे रही है। जिसपे फ्लावर्स लगे हुए है। सामने बहुत सारे परदे रंग बिरंगे परदे दिखाई दे रहे है। डिस्को लाइट की वजह से उनका कलर भी रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है।

सामने तीन लड़के और दो लड़किया खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जो की सेल्फ़ी निकलवाते हुए नजर आ रही है। इन्होने दो लड़कियों ने साड़ी पहन रखी है। और लड़के ने कुर्ते और--